व्यवस्था की गई है इसे बहुत अच्छा से सजाया गया है ये देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है।

और यह बहुत साफ़ सुथरा रहता हैं।

यहाँ पे इस पुतले के अगल बगल बहुत अच्छ साफ़ सुथरा जगह है।